है जिसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है सामने एक तरफ दो झेंडे लगे हुए साफ़ देखे जा सकते हैं दुसरे तरफ पेट्रोल टंकी है।

और सामने एक बहुत सारे कार खड़े स्कूटर खड़े हुए देखे जा सकते है नीचे की तरफ एक अंडर ग्राउंड बना हुआ है।

स्टेशन पे अभी कोई नहीं दिख रहा है और बैठने के लिए भी कुछ स्थाने बनाई गई हैं उपर बहुत सारी लाइट की तारे लगी देखी जा सकती हैं।

और ऊपर की तरफ ओ ऊपर की तरफ सफेद आकाश दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बादल देखे जा सकते है।

अगल-बगल में भी कुछ छोटी-मोटी मंदिरे दिखाई दे रही हैं जो देखने में काफी अच्छी लग रही है और ये मंदिर का परिसर --

उपर नीला आकाश है अगल-बगल में और भी पेड़ वगैरा देखे जा सकते है उन्हें देखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।